सी और C में स्कोप ओएफ वेरिएबल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्कोप ओएफ वेरिएबल्स क्या है
ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल क्या है
लोकल लोकल वेरिएबल क्या है
कुछ उदाहरण
हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधानों को भी देखेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकार्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1104
जीसीसी और g कम्पाइलर वर्जन 461 का प्रयोग कर रहा हूँ
स्कोप ओएफ वेरिएबल्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं
यह कोड का क्षेत्र है जिसमें वेरिएबल को ऐक्सेस किया जा सकता है
इसके प्रकार और डिक्लेरेशन घोषणा के स्थान के अनुसार यह दो श्रेणियों में विभाजित है
ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल
अब हम एक उदाहरण देखेंगे
मैंने एडिटर में पहले से ही प्रोग्राम टाइप किया है
इसे खोलें
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेम scopeसी है
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हेडर फाइल है
यहाँ हमने दो ग्लोबल वेरिएबल्स आ और ब घोषित किये हैं
और हमने उन्हें वेल्यू के रूप में 5 और 2 निर्दिष्ट करके इनिशियलाइज किया है
ग्लोबल वेरिएबल आपके प्रोग्राम में सभी फंक्शन्स के लिए उपलब्ध है
ये main फंक्शन के ऊपर किसी भी फंक्शन्स के बाहर घोषित हैं
इनमें ग्लोबल स्कोप है
यहाँ हमने एड फंक्शन बिना आर्गुमेंट्स के घोषित किया
यहाँ सुम एक लोकल वेरिएबल है यह एड फंक्शन के अंदर घोषित है
लोकल वेरिएबल केवल उन फंक्शन के लिए उपलब्ध है जिसमें यह घोषित है
ये वेरिएबल्स ब्लॉक के अंदर घोषित हैं
इनमें लोकल स्कोप हैं
तो आ और ब का योग सुम वेरिएबल में संचित होगा
यहाँ हम सुम प्रिंट करेंगे
यह हमारा मैन फंक्शन है
एड फंक्शन कॉल होता है और फिर निष्पादित होता है
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को निष्पादित करें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
कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस scopeसी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस एससीओ और एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें sco एंटर दबाएँ
आउटपुट निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है सुम ओएफ आ एंड ब इस 7 अब देखते हैं कि इसी प्रोग्राम को C में कैसे निष्पादित करें
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
पहले अपने कीबोर्ड पर एक साथ Shift Ctrl और एस की दबाएँ
अब एक्सटेंशन cpp के साथ फाइल को सेव करें और सेव पर क्लिक करें
हेडर फाइल को आईओस्ट्रीम में बदलें
अब यूजिंग स्टेटमेंट को सम्मिलित करें और सेव पर क्लिक करें
ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की घोषणा C में समान है
अतः कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है
अब प्रिंटफ स्टेटमेंट काउट स्टेटमेंट को में बदलें
फॉर्मेट स्पेसिफायर और n डिलीट करें
अब कॉमा डिलीट करें
दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें
क्लोजिंग ब्रैकेट डिलीट करें फिर से दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें
और डबल क्वोट्स में बैकस्लैश एन टाइप करें
अब सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस स्कोप डॉट सीपीप स्पेस o स्पेस एससीओ1 यहाँ हमारे पास sco1 है क्योंकि हम स्कोप c फाइल के लिए आउटपुट पैरामीटर एससीओ को ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं
अब एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें sco1 और एंटर दबाएँ
आउटपुट इस प्रकार दिखता है सुम ओएफ आ एंड ब इस 7
हम देख सकते हैं कि यह हमारे सी कोड के समान है अब हम कुछ सामान्य एरर्स देखेंगे जो आ सकती हैं
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ मानिए कि यहाँ मैं वेरिएबल आ फिर से घोषित करूंगा
टाइप करें इंट आ और सेमीकोलों सेव पर क्लिक करें
हमने मैन फंक्शन के ऊपर और एड फंक्शन के बाद वेरिएबल आ घोषित किया
देखते हैं क्या होता है
अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
अब पहले की तरह कम्पाइल करें
हमें एरर्स दिखती हैं रिडिफिनिशन ओएफ इंट आ इंट आ प्रीवियसली डिफाइंड हेरे
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
आ एक ग्लोबल वेरिएबल है
इसमें ग्लोबल स्कोप है
हम दो बार वेरिएबल घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पहले से ग्लोबली घोषित है
हम केवल वेरिएबल आ को लोकल वेरिएबल के रूप में घोषित कर सकते हैं
एरर फिक्स करें
इसे डिलीट करें
सेव पर क्लिक करें
फिर से निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
अब पहले की तरह कम्पाइल और निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गये हैं
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्कोप ओएफ वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल जैसे इंट a5 एएमपी और लोकल वेरिएबल जैसे इंट सुम नियत कार्य के रूप में दो संख्याओं की भिन्नता को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखे